यहां पर टेबल दिखाई दे रहा है सफेद रंग का--

सफेद कलर की बहोत सारी बकरीयां--

यहां एक कार दिखाई दे रही है सफेद कलर की।

काले कलर का खिड़की है जोकि--

बहोत लोग भी दिख रहे हैं।

साथ में बहुत सारे लोग भी दिख रहे है।

पीछे ईंटें लगी हुई हैं लाल कलर का।

नई ए_टी_एम मशीन दिख रही है।

यहां पर कारपेट का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है।

हमें रोड पर दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें छोटी छोटी लाइटें मिरर पर लगी हुई है।

साथ में ग्रे दीवारें और व्हाइट दीवार--

छोटे छोटे घर बने हुए हैं।

और बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

किसी जीव की है सफेद कलर के गेंडे की मूर्ति है।

और हल्का ग्रीन कलर भी दिख रहा है।